इसमें ब्लू रंग का बोर्ड दिख रहा है बोर्ड में प्रवेश निषेध लिखा हुआ दिखा रहा है।

ऊपर में बालकनी दिख रहा है साइड में खिड़की दिख रहे हैं ऊपर ऐ.सी. का इन्वर्टर दिख रहा है।